नीचे में टाइल्स बिछाई हुई है।

हमें यहां पर धूप भी बहोत दिख रही है।

और हमे यहां एक टावर दिख रहा--